ऊपर की साइड को निकाल के रखा जा रहा है और कुछ लगाया जा रहा है।

यहां बहोत सारे पेड़ हैं पेड़ों के ऊपर कुछ लगा हुआ है रेड कलर का येलो कलर का झंडा से--

दिखाई दे रही हैं ऊपर तीन टंकियां रखी हैं काफी सारे पीछे को पेड़ नजर आ रहे हैं छोटे-छोटे नीचे भी पेड़ नजर आ रहे एक दीवार नजर आ रही है।

अंदर सा नजर आ रहा है बराबर में एक और मकान है येलो कलर का।

इस चित्र में काफी सारे बैलून टंगे हुए हैं जो की येलो कलर के पिंक कलर के--

ये दो चिमनियां नजर आ रही हैं जिसमें से की धुआं सा निकल रहा है पीछे एक तो बड़ा सा ग्रा मैदान सा बना हुआ है सामने को ए दो --

यहां पर एक ब्लैक कलर का गेट बड़ा सा लगा हुआ है जिसके बराबर में मीटर लगा हुआ है ऊपर ए_सी लगी हुई है एक खिड़की नजर आ रही है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे है कुछ लोग यहां पर बाइक पे खड़े हैं।

इस पोस्ट में एक खंभा है खंबे के बराबर में तार जा रहे हैं बराबर में एक--

ये कॉम्प्लेक्स है इसमें एक सामने को दरवाज़ा जा रहा है काफ़ी बड़ी सी उम्म सीढ़ी जा रही हैं ऊपर को।

दो तीन घरों में काफी छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए है सामने को खिड़कियां नजर आ रही है।

केले का पेड़ है एक खंभा है जिस पे कि एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है दो खंभे बराबर में को लगे हुए हैं।

ये एक किला सा नजर आ रहा है जहां पर एक जेंट्स --

यहां पर कुछ लोग बैठे हुए है एक बड़ी सी टेबिल पड़ी हुई है आगे को काफी सारे फूल रखे हुए है।